और कुछ तोते सफेद हैं कुछ पंछी कुछ तोते के अलावा कबूतर भी हैं.

इस वेडिंग में इस फोटो में मैंने डेकोरेट किया हुआ--

नीला बाद नीदा नीला आसमान है शाम का टाइम है बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये चार छह है और पेड़ लगे हुए हैं.

इस फोटो में एक इस फोटो में नेचुरल स दिखाया गया है जो कि बहुत सुंदर है नीला समंदर है उसके पीछे पर पहाड है.

इस फोटो में एक बुक स्टॉल दिखाया गया है जिसके स ऊपर टीन लगी हुईं हैं और कलर पेंट है।

पाणी कि बोतल भी रखी हुई है.

और एक कार सफेद रंग की है एक ग्रे कलर की है उसके ऊपर से एक नीला कपड़ा पड़ा हुआ हैं।

अह उस घास पे चल रही हैं और यहां पे बहुत सारे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और दिन का समय है।

इस फोटो में एक चाय सेंटर दिखा हुआ है.

राहुल चाय सेंटर है इसमें चाय के साथ-साथ कुछ स्नैक्स और कॉफी की भी.

इस फोटो में दिल का समय और पेड भी लगे हुये हैं.

जो कि मेन रोड नहीं साइड रोड है इसमें एक ट्रैक्टर जा रहा है.

अह कुछ संस्था टाइप कुछ का बना हुआ सरकारी संस्था टाइप का।

इस चित्र में एक पार्टी का फोटो दिखाया गया है जिसमें

वाटर पूल की फोटो दिखाई गई है जिसमें.

अ अह तीन रिंग लगी हुई है जो लाल काले और हरे रंग की है उसके अंदर से लोग घुस के नहाते हैं।

इस फोटो में एक दुकान की फोटो दिखाई गई है जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं।

वो ब्रिज लोहे का बना हुआ हैं।

इस फोटो में कुछ बच्चों के फोटो दिखाई गई है जिसमे टीचर उनको पी_टी या एक्सरसाइज करवा रहे हैं।

इसमें एक स्कूटी दो कार है। एक कार ग्रे कलर की है एक कार नीले कलर की है।

इस फोटो में एक लग्जरी किचन का फोटो दिखाया गया है जो किचन पूरा सफेद कलर का है इसमें ये किचन पूरा मॉडल तरीके से बना हुआ है।

और ये इसका इसमें से एक फ्रिज रखा है जोकि काले कलर का है।

नीचे पा पार्किंग में दो कार खड़ी हुई हैं।

और एक साइड की दीवार पे ती-- ते-- तिरंगे के गुब्बारे लगे हुए हैं सामने कैलेंडर --.